इस तस्वीर में एक नजर आ रही है।

इस तस्वीर में रंग बिरंगी लाइटें लगी है।

इस तस्वीर में दो-तीन महिलाएं खड़ी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक गार्ड भी है।

इस तस्वीर में मॉल जैसा कुछ है ।

इस तस्वीर में दो-तीन पुरुष दूर बैठे हुए हैं।

दो पहिए गाड़ियां भी है।

इस तस्वीर में एक सेमिनार भी लगा है।

इस तस्वीर में एक कुर्सी खाली पड़ी है।

इस तस्वीर में दो-तीन लाइटें जल रही है।

इस तस्वीर में राजस्थानी होटल नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में नास्त और भोजन का प्रबंध का होटल है।

इस तस्वीर में दो तीन पुरुष नजर आ रहे हैं।

इस में लड़कियों के लिए पर्स भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में गणेश मूर्तियां भी है।

यह तस्वीर बस स्टैंड जैसा है इस तस्वीर में बहुत सारी बड़ी बड़ी बसे खड़ी हैं।

खिड़कियां में पर्दे भी हैं।

कुछ महिलाएं नजर आ रहे है इस तस्वीर में--

इस तस्वीर में महिला और पुरुष दोनों की भीड़ इक्कठी है।

इस तस्वीर में स्केलटन का पोस्टर भी है।

इस तस्वीर में बड़े अक्षरों में नाइंटी टैटू लिखे हुए है।

इस तस्वीर में कुछ लाइटें भी लगी हैं।

इस तस्वीर में एक चिकन है।

इस तस्वीर में एक लैपटॉप भी है।

इस तस्वीर में एक सोफा भी है।

इस तस्वीर में एक टेबल भी है जिस पे आदमी काम कर रहा है।

इस तस्वीर में दो बाइके लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में तरबूजें बिक रही हैं।

इस तस्वीर में कुछ बाइकें खड़ी हैं।

गिटारे है सब रंग बिरंगों की है इस तस्वीर में दो ढोलके भी हैं।

बैलून वाइट और ब्लू कलर की है।

उजली कलर की बैलूने नजर आ रही हैं।

यह ब्यूटी पार्लर जैसा लग रहा है।

इस तस्वीर में ए_पी को पोस्ट का पोस्ट हो रहा है।

इस तस्वीर में बैग्स भी हैं।

तीन गाड़ियां उजले कलर की है।

इस तस्वीर में डांस अकेडमी है।

इस तस्वीर में ट्रेनर सब को डांस सिखा रहा है।

इस तस्वीर में कुछ बालक-बालिकाएं हैं ।

इस तस्वीर में सारे बालक डांस सीख रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारी--

यह तस्वीर में बच्चे का जन्म दिन मन रहा है।

ट्रांसफर में तार भी लपेटे हुए है।

इस मैदान में चार पांच बालक नजर आ रहे हैं।

तीन चार बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

यह तस्वीर बाड़ का लग रहा है इस तस्वीर में चार पांच लड़कियां नृत्य कर रही है।

इस तस्वीर में लड़कियां नाच रही है।

इस तस्वीर में दो पुरुष नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर पूजा रेस्ट हाउस का है।

इस तस्वीर में बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही है।

इस तस्वीर में गोदरेज पे ताला भी लटका हुआ है।

खुले मैदान में कुछ बिल्डिंगे भी हैं।

इस तस्वीर में ताड़ की--

इस तस्वीर में नजर आ रही है।

इस तस्वीर में लाइन में कुछ कारे लगी हुई है।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट का है।

इस तस्वीर में एक टेबल है।

बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं इस तस्वीर में दो पुरुष नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत से पुरुष महिला भी हैं।

इस तस्वीर में सभी पुरुष महिलाए खड़े हैं।

इस तस्वीर में कोई त्यौहार मनाया जा रहा है।

इस तस्वीर में पुरुष लोग ढोलकें बजा रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ी नाव है।

इस तस्वीर में एक छोटी नाव भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में कुछ लाइटें भी चल रही हैं।

लड़कों का कपड़ा का शो रूम है इस तस्वीर में मैं--

सभी पुरुष जिम में अपना फिटनेस का तैयारी कर रहे हैं।

इस तस्वीर में एक लड़का लड़की साथ में बैठा है।

इस तस्वीर में दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं।

रंग बिरंगी लाइटें भी हैं।

इस तस्वीर में महिला और पुरुषो दोनों के लिए कपड़ा मिलता है।

इस तस्वीर में उजली कलर की लाइटें लगी हुई है।

इस तस्वीर में हैंगरों में लड़कों की कपड़े टंगी हुई हैं।

इस तस्वीर में तीन पुतला भी हैं।

इस तस्वीर में दो पुतला लड़कों की एक पुतला लड़की की है।

इस तस्वीर में पिज्जा --

जयमाला के स्टेज पे एक दूल्हा खड़ा है।

यह तस्वीर जिम फिटनेस का है इस तस्वीर में--

इस तसदीर एक लड़का बैठा हुआ है।

घुटने के बल बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारी लाइटें भी जल रही हैं।